लग रहा है और यहां का सभी सामान चमक रहा है।

और यहां कुछ लोग लिख रहे हैं।

कुछ नाव है अ नाव में दो दो करके आदमी बैठे है।

इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी पेड़ हैं।

पानी झरने से आता है लग रहा है यहां का लहर इस नदी का लहर काफ़ी तेज है।

यहां ऊपर में होटल जाने का सीढ़ी दिया गया है।

यह हूंड्योरी है यहां एक कोन्टर पे एक इंसान लैपटॉप पे काम कर रहे हैं यहां --

कुछ महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं।

यह ज्वेलरी शॉप है यहां पे कुछ चांदी के बर्तन--